और अलग अलग तरह के पोधे लगाये हुए है।

और साइड से भी एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने प्लेग्राउंड नज़र आ रहा है।

सलून की दूकान के सामने खड़ा हुआ है।

और कुछ लोग सलून की दूकान में अन्दर बेठे हुए है।

वहा पर कुछ पोधे के पोधे ल्ग्याये हुए है।

आदमी कुछ खरीद रहगा है वहा पर सब --

पंच से खड़े हुए है समो बना कर खड़े हुए है।

एल_ई_डी नज़र आ रही है इस टेबल पर कुछ--

श्री शिध बाबा बालक नाथ धर्म शाला --

एक एक मुर्गा निचे खड़ा हुआ है पानी का नल दिखाई दे रहा है।

स्कूल नज़र आ रही है वहाँ पर बहोत सारे स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे है और सर भी खड़े हिये है स्कूल के पास सब तरफ पेड़ लगाये हुए है और एक ग्राउंड नज़र आ रहा है।

एक घर नज़र आरहा है और साइड से सब झाड़ लगे हुए है।

ओर पीछे पीछे कॉस्मेटिक रखे हुए है।

एक बिल्डिंग नज़र आरही है जो बहार लेडीज खड़े हुए है।

सामने खेलने का ग्राउंड दिख रहा है वहा पर धुप और छाव भी है साइड से ग्रा-गा-ग्राउंड को कम्पाऊन किया हुआ है।

सामने बिल्डिंग में ये नाम लिखा हुआ है और--

बोहोत से ऐड बहोत से पोस्टर वहा पर छपे हुए है।

फंक्शन नज़र आ रहा है स्टेज पर कुछ लेडीज खड़ी हुई है ओए जेन्स भी खड़े हुए है।

और कुछ काम कर रहे है गार्डनिंग का काम चल रहा है।

लाल कलर के फूलों के पौधे दिख रहे हैं और साइड से सब हरे --

सामने हॉस्पिटल नजर आ रहा है वहा पे फाइल्स रखी हुई है।

बोहोत से लोग वहा पर टहल रहे है।

कुछ लेडिज है और कुछ जेंट्स नज़र आ रहे हैं।

कुछ एक वेन है और एक ट्रक नजर दिखाई दे रहे है।

सामने गार्डन दिख रहा है गार्डन में --

हरी खाद लगे हुए है और --

जिम कर रहा है और एक साइड में खड़ा हुआ है।

पेड़ नज़र आ रहे है और एक घर दिखाई दे रहा है।

और बहार से कुछ सामान लगा हुआ है।

साइड से पेड़ लगे हुए है।

सामने कुछ लड़के खेल रहे है।

बादल छाया हुआ है और लाइट के खम्भे दिख रहे है और--

एक आदमी मोटर साइकिल पे चल रहा है।

और एक वाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ है।

बोहोत सारी चीज़े दिख रही है।

वहां पर बहुत सारे आदमी शॉप में दिखाई दे रहे हैं।

कपड़ो का मॉल दिखाई दे रहा है वहा पर--

मॉल में सब तरफ लाइटिंग लगी हुई है।

बिल्डिंग पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स क्लासेस --

चहल आई_आई_ए_एस एकैडमी --

और साइड से ग्राउंड दिख रहा है।

और कुछ बच्चे और कुछ लेडीज जेंट्स दिख रहे है।

बिल्डिंग नजर आ रही है वहा पर मैकडॉनल्ड्स नाम लिखा हुआ है।

और वहा पर पेट्रोल पंप है और बहोत सी गाड़ी लगी हुई है।